और ये नीचे हरे-भरे कलर के पेड़-पौधे भी लगे हैं। काफी --

आ इसमें बड़े-बड़े हाइड्रोजन टाइप के लाइट भी दिख रहे --

का लॉन दिख रहा है और फूल पत्तियों से इसे बाहर काफी --

काफी सुंदर सा नजारा दिख रहा --

पंख हटा दिया गया है या कोई निकाल लिया है।

हीरो की एजेंसी दिख रही है।